और इसी के बराबर में एक आदमी जो पीले रंग की टी-शर्ट पेहने जिस पर एस.के. सुपर लिखा है खड़ा है।

ये शायद किसी बैंक के बाहर का तस्वीर है जिसमें शायद ये नोटबंदी के समय की हो सकती है जिसमें नोट बदलने के लिए बाहर एक लम्बी सी लाइन लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर में बड़े-बड़े मोटे-मोटे पिलर नीले-नीले रंग के सी ही एक टेंट --

नारंगी हरा और सफेद अरे ये तो हमारे झंडे का भी रंग है ना तो शायद ये गुब्बारे स्वतंत्रा या गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही लगाए गए हैं।

ये शायद एक राशन की दूकान है जिसके अंदर राशन और बाहर सब्जियाँ बेचीं जाती है।

जो कि झूला झूलते वक्त काफी खुश दिखाई दे रहे है और शायद अपने माता पिता से झूला झूलने की जिद कर रहे हैं।

जिनके मुँह के पास एक माइक है और ऐसा लग रहा है जेसे वो कोई भाषण दे रही हैं।

और खराब हो गई है क्यूंकि हमें एक आदमी इसे ठीक करता हुआ प्रतीत हो रहा है और इस गाड़ी का --

कितना सुंदर फव्वारा जिसमें से अच्छे से पानी निकल रहा है और उनकी बीच में से टिम टमाती सी लाइटें भी लग रही है।

और इस तस्वीर में खूब भीड़-भाड़ है शायद ये कोई ऐसा स्थल है जिसे लोग दूर-दूर से देखने आते हैं।

वेलकम द स्मार्ट वर्क शॉप शायद यह एक गैराज है और हमें इस गैराज में एक आदमी और एक गाड़ी नजर आ रही है और ये आदमी शायद अपनी गाड़ी को यहाँ ठीक कराने लेकर आया है।